और काफी सुंदर लाइटिंग लगी हुई है और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

पर्दों का डेकोरेशन है और साइडों में गमले रखें --

जिसके सामने आप देख सकते काफी सुंदर सूरज का नजारा है।

अच्छा सा घर बना हुआ है जिसके पास काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए--

और लकड़ी के बॉक्स भी बने रखे हैं काफी बड़ा टिन सेट वेयरहाउस हाउस टाइप का बना हुआ है।

आप देख सकते हैं ये एक काफी बड़ा हॉल है।

जेंट्स अंडर गवर्नमेंट्स और टी-शर्ट वगैरह की दुकान है जो कि बच्चों की टी-शर्ट भी मिलती है यहां पे--

और भी काफी सारे आइटम रखे हुए हैं यहां पे--

और काफी सारी ग्रीन मशीन काम कर रही है कुछ जे_सी_बी भी खड़ी हुई है एक कार भी खड़ी हुई है।

पुल के ऊपर कुछ ट्रक बस चल रही हुई है।

ये एक बड़ा सा पार्क है जिसमें आप देख सकते हैं सामने काफी छोटे-छोटे--

और काफी सुंदर नजारा है।

और सामने ही गेट खोला हुआ है गेट के पास कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं।

लोडिंग गाड़ी है जिसमें डी_जे लगे हुए हैं --

मकान के बाहर एक बलफ लगा हुआ है जोकि जल रहा है।

और सामने एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ है साउंड बक्सा--

आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा एक ब्यूची --

स्टेज बना हुआ है जिसपे काफी सुंदर लाइटिंग लगी हुई है और कुछ लोग सिंगिंग कर रहें हैं।

आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा--

चावमीन और प्याज कटी रखी हुई है पत्ता गोभी कटी रखी हुई है तवे पे बर्गर --

चाऊमीन एक जेंट्स चाऊमीन बना रहा है एक जेंट्स बाटी सेक रहा है।

ये एक दुकान है काफी सुंदर ब्यूटी पार्लर की दुकान है।

और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सामने और कुछ लोग साइकिल पे बैठे भी हुए है।

यहां पे कुछ बड़े से भगौने कुर्सी और --

राउंड राउंड छोटा सा वो बनाया गया है।

आप देख सकते हैं ये एक काफी पुरानी बिल्डिंग है और ऊपर काफी सारी खिड़कियां बनी हुई है जिसमें रेलिंग बनी हुई है।

ये एक ऑफिस है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी तस्वीरें लगी हुई है।

आ साइड में आप देख सकते हैं।

सीढ़ियों के पास डस्टबिन रखा काफी सारी सीढ़िया लगी हुईं हैं जिसपे आप देख सकते हैं स्टील रेलिंग लगी हुई--

आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा मकान है जिसमें नीचे शटर निकली हुई है।

खोला हुआ है बट गेट में चैन लगी हुई है और मकान के--

ये पार्क के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और काफी सारे--

एंड बस वगैरह और काफी सारी क्रीम है।

और काउंटर पे नेल पॉलिश बिंदी वगैरह --

और भी काफी सारे आइटम रखे हुए हैं लेडीज आइटम जो कि कुछ लोग खरीददारी भी कर रहे हैं।

आप देख सकते हो ये काफी सुंदर--

आप देख सकते हैं ये एक काफी सुंदर मकान है जिसमें--